मेरे सामने इस तस्वीर एक पुल नज़र आ रहा है जो पुल रेल की पटरियों को पार करने में इस्तेमाल किया जाता है।

हरे कलर का पेड़ भी नज़र आ रहा है कच्ची सड़क नज़र आ रही --

इस फोटू में एक आदमी पुल के ऊपर खड़ा है जो सामने समंदर को देख रहा है।